ये साइड में एक शॉप है ज्योकि शटर लगा हुआ ह।

इन डब्बे मै में और यहाँ पे एक जालिसा बड़ा भी लग रहा है।

र गेट पे भी एक गाडा रखा हुआ ह।

सारे चीज अवैलेबल है और इसका शटर है जो उठा हुआ है।

यहाँ पर किसी महान पुरूष का --

ये शासकीय अभियान त्रिकी महाविद्यालय औरंगाबाद मे --